तार दिखाई दे रहे हैं कलर दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहे हैं रंग-बिरंग के कुछ नीचे बा पोस्टर --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

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के रोड़ गया हुआ है।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

सोफे रखे हुए हैं लाइटें लगी हुई है वाइट कलर की।

इन ऑटो दिखाई दे रहे हैं कुछ गाड़ियों पे बैठे हुए हैं खड़े हुए हैं दिखाई दे रहे हैं बादल दिखाई दे रहे हैं ब्लैक व्हाइट कलर के।

एक मकान दिखाई दे रहा है जिस जो कुछ दुकानें हैं उसमे कुछ लिखा हुआ है मोमो करके यहां लाइटें लगी हुई है।

व्हाइट कलर की येलो कलर से ब्लैक व्हाइट कलर से डेकोरेट हो रहा है कुछ व्यक्ति गए हैं खिड़कियां दिखाई दे रहे हैं साइड से बिल्डिंग है।

कुम लाइट लगी हुई हैं और दिखाई दे रहे हैं ग्रीन --

हम्म कुछ बिल्डिंग है भी दिखाई दे रही है सामने और कुछ लिखा हुआ है।

एक मैदान दिखाई दे रहा है जिस मैदान में जे कुछ गर्ल्स बैठी हुई है वह अपने-अपने पैरों से हाथ लगाए के बैठी हुई है कुछ लड़ --

एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जिस ऑफिस में बहुत सारी चेयर्स रखी हुई है ब्लू कलर रेड कलर की रखी हुई है चेयर्स फैन लगे हुए है।

चेयर रखी हुई है एक गेट दिखाई दे रहा है उस पे ग्रे कलर पुता हुआ है मकान दिखाई दे रहा है माकन में --

कार खड़ी हुई है साइड गार्डन दिखाई दे रहा है पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के बादल दिखाई दे रहे हैं वाइट कलर --

एक मकान दिखाई दे रहा है जिसमें पार्टी हो रही है कुछ गर्ल्स कर रही है डांस वगैरह कर रही है रंग बिरंगी मर्क --

ग्रीन कलर के हरे-भरे पेड़-पौधें दिखाई दे रहे हैं हर साइड से बाउंड्री हो रही है कुछ तार के खम्बे भी दिखाई दे रहें हैं बादल दिखाई दे रहें हैं ब्लैक वाइट कलर के --

कुछ मिट्टी दिखाई दे रही है रेड टाइप ।

एक रोड दिखाई दे रहा है इस रोड पे ठेलें लगे हुए हैं कुछ सब्जियों के क्रेटें रखी हुई है बाल्टी रखी है।

यह एक भवन दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है पूरा उसमें कुछ फैन लगी हुई है कुछ लाइटें भी।

दिखाई दे रहे है पर्दे दिखाई दे रहे हैं खम्बे पिलर टाइप दिख रहे है साइड से पिंक कलर पोता हुआ मकान में है।

बादल दिखाई दे रहे है रंग-बिरंगे एक पानी की टंकी दिखाई दे रही है कुछ गमले टंगे हुए हैं।

एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें छपक नाम की कुछ लिखा हुआ है झंडियाँ दिखाई दे रही रंग-बिरंगी रंग-बिरंगी --

एक बस खड़ी हुई है बस के सामने एक जेंट्स खड़ा हुआ है बस समीर नाम की बस है बादल दिखाई दे रहे है व्हाइट कलर के तार दिखाई दे रहे है।

यहाँ खड़ी हुई जेंट्स लेडिस बच्चे सभी लोग खड़े हुए हैं कुछ बैठे हुए हैं कुछ देख रहें हैं कुछ बातें कर रहें हैं सामने गार्डन एरिया है।

लगी हुई रंग बिरंगी टीन शेड दिखाई दे रही है | साइड में बाउंड्री दिखाई दे रहे व्हाइट कलर की पंखे रखे लगे हुए हैं ।

एक चट्टान दिखाई दे रही है चट्टान में कुछ पत्थर दिखाई दे रहे है चट्टान के नीचे कुछ जेंट्स और लेडिस खड़े हुए हैं।

हम्म जमीन दिखाई दे रही जमीन में कुछ अ दुर पौधे भी दिखाई दे रहे हैं कुछ एक जेंट्स अ नाडी चला रहा है बैल दिखाई दे रहे हैं।

बादल दिखाई दे रहे हैं रंग-बिरंगे।

जो व्हाइट गोल्डन कलर टाइप का दिखाई दे रहा है।